यहां पर मैं एक रेगुलेटर देख पा रही हूं उसके ऊपर एक बोर्ड रखा गया है।

अंदर की तरफ में एक कार्टून ।

सारी लाइटे लगी हुई है बगल में मैं कुछ पॉट में फूल लगे देख रही हूं--

साइड में बहोत सारे सामान बड़े बड़े थैले में रखे गए हैं।